यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं बड़े से पेड़ लगे हुए हैं।

एच पि का अ जो होता है पेट्रोल --

अ गमले वगैरा रखे हुए हैं कोई जगह है जहां पर एक--

अ ये एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है ।

अ कोई इंस्टिट्यूट या कोई एजुकेशन --

अह या इस पर जो बस खड़ी है पीली इसके बाहर इस पर चंडीगढ़ लिखा हुआ है फोन नंबर लिखा हुआ है ।

ये एक फ़ूड स्टोर है एक दुकान जिसमे --

नमकीन और केकस पेस्टी --

जो बास्केट बॉल का मैदान होता है खेलने का बच्चों का --

अ यहा पर हरे भरे हमें पेड़ पोधे नज़र आ रहे है ।

तो अ बस है गाड़िया वगेरा सब खड़ी हुई है भीड़ भाड वाली जगह है ।

अह जो यहां पे पौधे देखने के लिए हम आते हैं और इसका नाम है आस्था नर्सरी ।

ऍम अ ये कुर्सिया लगी हुई है बोहोत सारे आदमी ओरत सब बेठे हुए --

वो दिखाई दे रहा है जो मैंन गेट है उस पर--

आपस में बाते कर रहे है तीन लोग बेठे हुए है ।

इसमें हम देख सकते है की एक बड़ी सी --

ये द्रश्य है जब हम कही पर हम लोग मेला वगेरा जाते है।

और अ इसपर छाबड़ा टेलिकॉम लिखा हुआ है ।

इसी लग रही हैं कोई बड़ी सी जगह हॉस्पिटल या जो भी कोई ऐसी जगह होती हैं क्यूंकि जो सफ़ेद कपड़े ढूले डले हुए हैं।

लाल कलर की अन्दर सफ़ेद कलर की बड़ी बिल्डिंग नजर आरी हे और जो बोर्ड पर जो नाम लिखा हे गवर्मन्ट मोड़ल हाई स्कूल हैं।

बच्चो की और ये स्कूल का द्रश्य हे कोई स्कूल हे बड़ा सा अन्दर बना हुआ हें वह बच्चे खेल रहे मैदान में --

अ इसमें हमें नज़र आ रहे है दो त अ दो बड़े बड़े अ जो --

ओम एक लेडिज खड़ी हुई एक औरत एक आदमी से बातें कर रही है और यह काफी बड़ी दुकान है कपड़ों की।

बाइक हे एक कार नजर आरी हे ओर अ कुछ लोग भी खड़े हुए हे कुछ आदमी खड़े हुए हे वहा--

ये हे सुंदर सा एक बगीचा गार्डन जिसे हम गार्डन एरिया कहते हैं उसका रास्ता नजर आ रहा हैं।

और उसके साथ ही काफी टेटू बने हुए है उसके उपर --

सुनी जगह पर ये दो बेंचे गार्डन में और एक काफी दूर भी रखी हुई हैं साइकिल खड़ी हुई हैं।

गाड़ी खड़ी हुई है अ स्कूटर और --

और ये मंदिर है मंदिर के बाहर की दुकाने लगी हुई है ।

अ उने बड़ी सलीके से सजाया गया है --

और काफी अ आदमी औरत सब बैठे हुए और उनकी बात को सुन रहे हैं।

काफी सारे फल केले सेब अ हमें नज़र आ रहे है और भी फल है ।

अ पढने की जगह है विद्यार्थीयो के ये बेग्स रखे हुए --

अ कोई जगह कोचिंग जहा भी अ बोहोत सारे बेग्स दिखाई दे रहे है ।

अ इसमें हम देख रहे है की एक भाईसाब नज़र आ रहे है।

हा ये एक जो सेंटर और जो अछे ताजे फल फ्रूट और जो --

और इसकी बिल्डिंग पर एक नाम लिखा है महिंद्रा ।

अ दे रहे है एसा ये उन्होंने क्लिक किया है ।

और सारथि नाम लिखा हुआ है गाड़ी पर ऐसा लग रहा है की --